इसके बाहर एक वृक्ष लगा हुआ--

इस बस के आगे एक व्यक्ति खडा हुआ है इस बस बस का शीशा--

मकान बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

इसमें कई प्रकार की वस्तुएं भी दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ शर्टें तथा अन्य प्रकार की वस्तुएं भी दिखाई दे रही हैं जिसके पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ हैं।

खड़ा हुआ है तथा दूसरा व्यक्ति उसे देख रहा है।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

यह चित्र एच_डी_एफ_सी बैंक का है।

यह चित्र किसी मॉल या दुकान का लग रहा है।

और यहां पर कुछ फुलझड़िया जलती हुई दिखाई दे रही है इसके पीछे एक बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

दरवाजे बनाए गए है और अच्छे प्रकार से लाइटे भी लगाई गई है जो देखने में--

यह दृश्य एक मीटिंग का लग रहा है।

एक इंडियन ऑयल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

तथा उसके बगल में कुछ लोहे की रॉडे बिछी हुई है।